यहाँ पर बहोत से लोग बैठे हुए हैं और ऊपर --

एक व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके हाथ मे एक काले रंग की --

यह एक मैरिज हॉल है और यहां पर नारंगी पीले हरे --

जो हरे रंग के है वहीं पर एक--

यहां पर एक बड़ा सा प्लेन खड़ा है प्लेन का रंग सफेद और नीला हैं।

यहां सामने एक बड़ा सा मॉल बना हुआ है।

यहां एक इमारत है इसका रंग सफेद और लाल है इसके ऊपर --

और पहाड़ के नीचे एक सफेद रंग की रेलिंग दिखाई दे रही है वहीं रेलिंग के पास--

टेबल के ऊपर एक पानी की बोतल रखी हुई है पीछे खिड़की में दो पर --

खूब सारे लोग नहा रहे हैं और सामने वाली दीवार पर --

यहां सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसने ब्राउन कलर की जै --